और कहा कोई वाइट कलर का ड्रेस पहना है कोई ब्लू कलर का ड्रेस पहना है तो कोई कोक कलर का ड्रेस पहना है। एक लेडीज खड़ी है।

ये तस्वीर एक नदी की है नदी की है जिसमे कि दो अंदर नाव एक अंदर नाव है और एक थोड़ा सा बाहर नाव है।

अ कुछ लोग फोटो खीच रहे हैं कुछ लोग खड़े हैं और लाइटस जल रही है और स्टेज को पूरा फूलों से सजाया गया है और बहुत सारे लोग औरत जेंट्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं।